यहां पर कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है।

हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में काफी सारे पौधे--

और जो बल्ब है बहोत दो लगे हुए।

यह एक बहोत ही हरियाली भरा हमे वातावरण लग रहा है।

और बाइक्स भी नजर आ रही है गाड़ी सिर्फ एक ही आ रही जो राइट में--

अगर हम देखें राइट हैंड साइड में तो वहां पे भारत के झंडे के तरीके से जो है।

दूसरी ओर हम देख सकते हैं एक जाली सी लगी हुई है जाली की दूसरी ओर हमें दिख रहा है हरे कलर का कुछ बिछाया हुआ है नीचे--

इसके ठीक दाहिने ओर एक पोल भी खड़ा हुआ है दोनों से तीनों तरफ हम देख सकते हैं पेड़ ही पेड़--

पिलर का जो फाउंटेन जो है तीन का है एंड एंट्रेंस गेट पे जो है एक इंसान जो नजर आ रहा है ऐ_सी जो यहां पे मौजूद है वो स्प्लिट ऐ_सी है।

एक मछुआरा जो है अपनी नाव के साथ चला हुआ है।

यहां पर हम देख सकते हैं एक गुरुद्वारा दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और पार्किंग में जैसा कि दो गाड़ियां खड़ी है।

यह एक ज्वेलरी शॉप है और यहां पर हम देख सकते हैं तीन चेयर्स लगी हुई हैं।

और उसके ठीक ऊपर हम देख सकते हैं एक स्प्लिट ए_सी भी लगा हुआ है।

जिसके ऊपर जो है एक झंडा भी लहराता हुआ नज़र आ र --